उ यह एक सोफा सेट है जिसमें दो छोटे सोफा अलग है। एक बड़ा सोफा अलग है।

और यह है रोड साईड का व्यू है | जहाँ आसमान साफ़ है | पहाड़ है पीछे पहाड़ी ऐसी --

यह पर एक नाई की दुकान का व्यू है जहाँ पर एक छोटा बच्चा कुर्सी पर बेठ कर बाल कटवा रहा है जिसके सिर पर हेयर में क्लिप लगी हुई है।

यह एक मकान का एरिया है। इसके अंदर कुंआ खोदा हुआ है एक खाट बिछी हुई है कुछ ईंटें रखी हुई हैं लोहे का गेट है।

यहाँ काफी कलरफुल छाया हुआ है मौसम।